यह तस्वीर आपको एक हॉस्पिटल की दिखाई जा रही है जहां पे बहोत सारे डॉक्टर जो कि जो है अपने ऑपरेशन का कपड़ा पहने हुए आपको सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग का देखिए।